किराना दुकान किराना दुकान मे सारे बहुत सारा समान बेचता है समान --

जंगल है जंगल में मोर है मोर बहोत ही अच्छा लगता है। मोर देखने में भी बहोत अच्छा लगता है। मोर का पंख बहोत ही सुंदर खिले हुआ है।

ये एक रास्ता है। रास्ता में पानी जम गया है। बहुत सारा पानी है और बस गाड़ियाँ सब चल रहा है।

ये होटल है होटल में सब खाने आया है शाम का टाइम है बहुत ही अच्छा लग रहा है होटल देखने में बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही अच्छा है रंग-बिरंग का खाना है जो पसंद है वो मिलता है।